एक गाड़ी पार्क किया गया है यहाँ आदमी दो चार है यह पार्क की जगह में ईट लगाए हुए है पक्के का--

और यह मेडिकल में कुछ दवाई -उवाई ले सकते हो पूरा स सड़क के किनारे गाड़ी का भिड़ लगा हुआ है देखो पिछे तक आ रहा है गाड़ी --

जो कितना भयानक रूप से सजा हो गया है।

और इसमे छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे पौधा आथे इसमे बाइक कार ल सब गाड़ी म इहाँ घूमे आथे।

आप इसमे अपना कुछ भी सामान ले सकते हो।

इसके बगल में एक कोचई पत्ता भी है यह कोचई पत्ता आप देख सकते हो कितना बड़ा -बड़ा दिख रहा है यह जमीन कितना भयानक सुंदर--

इधर इस पार देखेंगे तो लाइट ए का खम्बा और उसके पीछे देंगे तो बहुत ज्यादा कार और डगर को देख स मस्त --

हुए हैं जो चश्मा टोपी कपड़े कितना भयानक पहने हैं अऊ उसके पीछे देखेंगे तो एक व्यक्ति और खड़े हैं।